गेट के नीचे ईट लग रही है।

कुछ पेड़ पौधे भी हैं यहां।

पर नीले कलर का और ब्लैक कलर का रंग हो रहा है और हरे कलर का --

नाव है दो एक पंछी उड़ रही है आगे बहोत--

और तीन आदमी खेल रही हैं बैट बॉल ।

नीचे घास जम रहा है आगे--

यहां पर एक गाड़ी खड़ी हुई है यहां पर--

बहुत सारे यहां पर आगे दो कैंपर है एक बाल्टी रखी है।

और यहां पर अलमारी भी है और यहां पर बोर्ड भी लगा है।

और यहां पर बराबर में पेड़ पौधे हैं।

पीले कलर की और उ पानी टपक रहा है उस पे।

यहां पर एक ग्राउंड है ग्राउंड पर घास जम रहा है।

भी खड़ी हैं और इसपे लिख रहा है गोवर्धन टीयूरिस्ट शुद्ध वैष् --

यहां पर बहुत सारी अलमारी के खाने हैं उस पर --

और यहां पर बहोत सारी महिलाएं डांस कर रही है।

और नीचे फर्श बिछ रहा है फर्श पर लाल कलर का--

इस पर बहोत सारे कमरे बने हुए हैं।

यहां पर सामने एक मंदिर है।